एक स्विमिंग पुल है जिसमे स्विमिंग पुल में कुछ बच्चे लड़किया नहा रही है।

उपर लाइट लगी हुई है और अलमारी रखी हुई है काउंटर लगा हुआ है।

एक बड़ी मंदिर है जिस मन्दिर मे सिरडी बनी हुई है।

मंदिर है जो मंदिर के बगल में हरे पेड़ पौधे भी है बादल नीला है।

और सीढ़ी बनी हुई है कुछ लोग सीढ़ी में खड़े हुए है और कुछ मंदिर के सामने खड़े हुए है।

बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में हरी घास जमी हुई है और बहुत अगल बगल बहुत सारी कुरसिया रखी हुई है लगी हुई है लाइट लगी हुई है एक लडका एक मैदान में खड़ा हुआ है और रेलिंग लगि हुयी है।

की बड़ा सा होल है जिस होल में अगल बगल अ अगल बगल पिली दिवाले है और लाइट लगी हुई है।

और एक घडी लगी है निचे कुछ कुर्सी रखी हुई है और कुछ लडके लोग बेट बल्ला खेल रहे है।

बाहर का है पार्क में नीचे हरे घास जमा हुआ है।

और अगल बगल हरे पेड़ पोधे है और लाइट लगी हुई है उपर यह लीला बादल है।

और कुर्सियां रखी हुई है पोर्ट लगा हुआ है ऊपर लाइट लगी है।

और सामने और बादल नीला और सफेद है।

बना हुआ है आने जाने की एक गाडी खडी हुई है अगल बगल मैदान है जिसमें हरा घास जमा हुआ है।

एक आदमी खड़ा हुआ है अगल-बगल हरे पेड़ पौधे है बादल सफेद और नीले है।

एक मैदान है जिसमें एक लाल चोच वाले एक पक्षी बैठा हुआ है।

गार्डन है जिस गार्डन एक रास्ता बना हुआ है रास्ते पे एक लडका खड़ा हुआ है।

और अ- ई- इ छोटा छोटा गार्डन है जिस मे हरा घास जमा हुआ है।